वाओ इसमे नीला आसमान दिख रहा है कुछ लोग हैं जो मैंदान मैं खड़े हैं एक अच्छा सी फील्ड है।

और बाउंड्री दिख रही है और पेड़-पौधे दिख रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इसके उपयोगी वस्तुएं काफी सारी रखी हुई हैं और यह बहोत अच्छी हेयर कटिंग कट कर रहा है।

बोहोत बहो सारे पर्वत मोस्ट ब्यूटीफुल सीन वाउ --

और इसके खंभे बोहोत सारे हैं।

बोहोत बड़ा घर दिख रहा है। बड़ा सा गेट लगा हुआ है। नीला आसमान दिख रहा है।

तीन व्यक्ति पैदल चल रहे हैं साइकिल है और एक बगल से --

हेयर कटिंग कर रहे है और अपना हेयर कटिंग का सामान रगे हुए है।

नीला आसमान बादलो की सुंदरता से भरा हुआ है। मोस्ट ब्यूटीफूल पिक्चर ।

एक बाँध में एक लड़का खड़ा हुआ है अगल-बगल उस के पानी भरा हुआ है।

यह एक फूलों की दुकान है जिसमें से बहुत ही सुन्दर सुन्दर फ्लॉवर्स रखे हुए हैं तथा फ्लावर्स --

नृत्य कर रहे है जो कि बोहोत ही सुन्दरीय है।

सेलब्रैशनो की तैयारी हो रही है। बोहोत गुब्बारे लगाए हुए हैं और --

ये एक भैया जोकि घड़ी बना रहे है कंपनी पर --

जिसमे से राधा कृषण भगवान बैठे हुए है। बोहोत ही सुंदरीय दृश्य है।